बच्चा लाल कलर का पैंट पहना हुआ है।

लेडिस के हाथो मे भी लाल कलर का है।

और टेबल भी है।

एक आदमी है जो चप्पल पहना हुआ है।

बड़ा है पहाड़ के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है।

कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में।

बहुत सारे पेड़ हैं।

प्लास्टर का छावनी है।

और एक लड़की लाल कलर का कपड़ा और ग्लास लेते हुए--

लकड़ी का घेरा हुआ है।

यह एक दुकान है।

सदा कलर का शर्ट पहना हुआ है।